अउर सब काला क्लर से नीचवा घांस बाटे कुछ हरियर बाटे और एगो टेबल बाटे रखल बाटे।

एगो मंदिर टाइप में घर बा और गेट लागल बा काला कलर के बहाव तोन एगो स्कूटी खड़ा बा।